पानी का घड़ा भी दिख रहा है और वाटर कूलर भी दिख रहा है।

पुलिया पिलर्स के बलबूते पे खड़ी है।

उसके आगे फोटो स्टूडियो भी लिखा हुआ है यहां मनोहर भट्टी जी का कांटेक्ट नंबर --

रैक पर जूते और सैंडल दिखाई दे रहे हैं।

बुक्स सारी रैक पर जमी हुई दिख रही हैं।

ढाबे के बैनर पर केशर ढाबा एंड रेस्टोरेंट लिखा है।

गेट पर नीले अक्षरों से स्नो व्हाइट लिखा हुआ है गेट के आस पास हरियाली है।

और चार वाटर कूलर भी दिखाई दे रहे है।

नीली चेयर पर एक आदमी बैठा हुआ है।

यहां दो लड़के सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं।

बिल्डिंग के बाहर ऑटो रिक्शा भी खड़ी हुई है।

रास्ते के उस पार भी भीड़ नजर आ रही है।

यहां कार रिपेयर होने के लिए खुली हुई है।

दोनों कार दिख रही हैं एक सफ़ेद रंग की है और दूसरी काले रंग की है।

इंफ्रास्ट्रक्चर का बोर्ड भी नजर आ रहा है अभी स्टेट लाल रंग में लिखा हुआ है।

यहां कुछ बोरों में सामान रखा हुआ दिख रहा है बोरो का कलर सफेद है।